मोटरसाइकिल लेकर और ट्रक टेंपू भीं दिखाई दे रहीं हैं।

जो काउंटर पर किसी जार में रखे हुए हैं और काफी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में हैं।

तलहटियों से होकर आती हुई नदियों कि यह एक धारा है।

और नदियों की जो धारा है ये नीचे की ओर अपनी पानी को प्रवाहित कर रही है।

इससे पता चलता है कि ऊपर में जो क्लीनिक है वह दांतों का किसी अस्पताल का दिखाई दे रहा है और नीचे में गिफ्ट कॉर्नर है।

प्रोग्राम इसे बोल सकते है जो पंडाल की आकृति बनी हुई है और मुख्य द्वार की आकृति दिखाई दे रही है।

बरसात के दिनों में काफी स्वच्छ और व्हाइट यानी फ्रेश दिखाई देता है।

जो जूते के मॉल के एक भाग का यह पिक है।